यहां में मुझे एक भी नजर आ रहा है।

मुझे यहाँ में कई तरह के रिबन भी रस्सी में लगाते नजर आ रहा है।

का नीचे में एक कढाई भी नजर आते हुए--

दरवाजा का ठीक ऊपर में एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा--

मुझे यहां एक छोटा सा घर नजर आ रहा है।

सोफा का ऊपर जो कुशन रखा गया है वो सफेद कलर का है।

टावर जंगलों के बीच में है।

आइसक्रीम को प्लेट में रखा है।

बिना कपड़ा का आदमी लाठी पकड़ रहा है।

दूर में एक घर भी दिखाई दे रहा है।

इसमें एक टेबल दिखाई दे रहा है।